होटल मे होटल मे एक जीना बना हुआ है पेड़ लगा हुआ है चार सिडिया दिखाई दे रही है।

मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में सर्किट दिखाई दे रही है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है। कुछ लाइट दिखाई दे रही--

चर्च है चर्च का गेट दिखाई दे रहा है दो पिलर दिखाई दे रहे है जो पिलर गुलाबी रंग से पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

रूम है जिसमें बलून लगे हुए हैं।

एक डॅम दिखाई दे रहा है डॅम के अंदर घर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर दूसरी बिल--बिल्डिंग दिखाई दे रही है।